नीले कलर का ए.टी.एम पूरा पूता हुआ है। इसमें एक कांच का गेट दिख रहा है मुझको।

सजी हुई गाड़ी दिख रही है। उसमे फूल लगे हुए हैं। उसके अंदर चारों कांच के गेट खुले हुए हैं।

मस्जिद दिख रही है। मस्जिद के बाहर एक छोटी सी रेलिंग लगी हुई है ऊपर वायर काले कलर के लटक रहे हैं।

मुझे इस इमेज मे बैंक ऑफ बड़ोदा का बैनर दिख रहा है बैंक ऑफ बड़ोदा के बैनर के नीचे --

एक छोटा बैनर है अ उसका कलर भी ऑरेंज है और एक ए.टी.एम. --

उसके पास मे खूब सारे पेड़ लगे हुए हैं। पीछे खेत दिख रहा हैं। खेत मे भी कुछ बड़े बड़े से पेड़ लगे हुए हैं।

चद्दर पे एक मकान दिख रहा है। एक कुछ लाइटे दिख रही है जो --

टेबल पे उनको रखा गया है। टेबल के पीछे मुझे एक और तस्वीर दिख रही है जिसमे एक पेड़ दिख रहा है। एक हरे कलर की घांस दिख रही है।

घर के पास से बहोत एक घर पीले कलर का है। एक घर हरे कलर का है और एक घर काले कलर का बना हुआ है।

पेड़ के पास में एक घर बना हुआ दिख रहा है। घर के पास में एक बौंडरी वॉल करी गई है।

मीटर्स लगे हुए हैं। मीटर्स मे लाइटें जल रही है।